यहाँ पर हमे एक ब्लू कलर का बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जो क़ी लोहे का है। उस गेट पर हमे ब्लैक कलर का--

फोटो में जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पेहनी हुई है और ब्लैक जीन्स और पीछे की तरफ हमे किनारे की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे हमें बहुत सारा समान दिखाई दे रहा--

यहाँ पर हमें ए सुम्मिंग पूल दिखाई दे रहा है जहां पर हमें बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे है यहां पर कलर फुल है झूले और पानी बिल--

यहाँ पर हमे एक बड़ा- सा लो पत्थर दिखाई दे रहा है जिस पर हमे आ भगवान बने हुए दिखाई दे रहे है।

और सामने की तफर हमे एक और लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ सारा रूम हमे वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक एरोप्लेन दिखाई दे रहा है जो की वाइट और रेड कलर का है और यहाँ पर हमें बहुत सारे सूखे - सूखे घास भी नजर आ रहै हैं।

पेड़ भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहे--

और यहाँ पर हमे सामने की तरफ बहुत भी पेड़ नजर आ रहे है और हमे ऊपर की तरफ आसमान नजर आ रहा है उसमे बादल भी दिखाई दे रहे--